करे वाला ह। ये मेहरारू का फोटो बनल ह एक ठे मेहरारू भाषण देत हई करिया करिया पूरा पर्दा लगल ह गुलाबी-गुलाबी पर सीढ़ी लगल ह।

हइ रेस्टोरेंट ह होटल ऊपर ह शीशा पे पर्दा लगल ह। मिठाई का दुकान ह जउन खूब बढ़ियां ह। नीचे अंडरग्राउंड है। गाड़ी वाड़ी राखल बाटे पार्किंग का ह।

गाजर मुरई टमाटर गोभी मटर पत्तागोभी फूलगोभी और खीरा कुल चीज मिलत है।